सामान ओमान रख के दिखाई दे रही ।

रखे हुए दिखाई दे रहे हैं दिन का समय दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर की लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही बाहर की ओर कई सारे शटर वटर लगे दिखाई दे रहे हैं सामने की ओर --

मुझे इस फोटो में सामने सारे हडे भडे पेड़ पौडे --

लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कई सारे कई सारे हरे-भरे पेड़-पौधे लगा है सामने कई सारे।

पीले कलर की मैट बिछाई गई है सामने की ओर कई सारे--

लाइटिंग वाइटिंग लगाई गई हैं सामने --

सामने क्योंकि सारे बैठने के लिए बने दिखाई देने का समय दिखाइ दे --

जिसमें हमे हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं सामने की ओ--